यह पांच बॉक्स हैं ऊपर चार डी_जे लाइट हैं।

इधर एक आदमी बैठ के खाना खा रहा है।

लाल बत्ती जल रहा है।

पे दो आदमी हैं।

ये एक पर्दा का दुकान है।

नीचे एक रस्सी बीच में ही वहां--

लगा हुआ है सब आदमी पीछे हाथ धरे हुए हैं।

ये एच_डी_एफ_सी बैंक है यहां पर चार जेंट्स लोग हैं एक घड़ी देख रहा है और पीछे बंदूक ताना हुआ है।

इधर एक लड़का फोटो खींच रहा है ऊपरे सजाया हुआ है तारा से।

यहां पे सब लोग पूजा करने आए है वहां पे हुए हैं।

पहाड़ी इलाका है सामने एक घर है।